यहाँ सामने एक कार खड़ी हुई है जो गोल्डन कलर की दिख रही है कार बहुत ही सुंदर लग रही है।

यहाँ सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है। गार्डन बहत अच्छा लग रहा है और गार्डन में बह सारे पेड़-पौधे ब हरियाली दिखाई दे रही है। गार्डन में एक झूला लगा है जिसमें दो बच्चे --

जो मैदान की सुंदरता में चार चांद बिखेर रही है। मैदान चारों तरफ पेड़-पौधों से घिरा हुआ है औ मैदान के ऊपर बादल दिख रहे --

यहाँ सामने कुछ लोग योग करते हुए दिखाई दे रहें हैं और अच्छे तरीके से वो योग कर रहें हैं।

बिल्डिंग के आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ पौध भी दिखाई दे रहे है और बिल्डिंग के बाहर कुछ कारे रक्खी हुयी दिखाई दे रही है जो बहुत ही सुन्दर।

यहाँ सामने बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है और शॉपिंग मॉल में बहुत सारा समान रखा हुआ है।